ये रूम मस्त दिख रहा है और कुछ टेबल लगा हुआ है काला-काला का--

सभी प्रकार से दिख रहा है गाड़ी पीछे में बहुत बड़ा का पेड़ लगा हुआ है और बिजली का आस्था है बल्ब भी बर रहा हैं।

यह एक कोई शहर का दुकान है यह नीलम हाई टेक डेकनोटिक लिखा हुआ है यहां जांच केंद्र है बोले तो लैब --

विष्णु भगवान का मूर्ति है विष्णु भगवान बैठा हुआ है एक हाथ में कमल फूल पकड़ा हुआ है एक हाथ में आशीर आशीर्वाद देते हुए फोटो बनाया गया इसका मूर्ति को नीचे बहुत सारे इंसान भी है देखने के लिए आए हैं ।

पेड़ ज्यादा ऊँचा का नइ है थोड़ा ऊँचा है लेकिन बहुत सुन्दर दिख रहा है पानी बह रहा हैं ।

यहाँ मिस्री वाला काम चल रहा है यहाँ किसी का घर या कुछ बन रहा है यहाँ लेबर लोग --